और उसके हाथ में एक कप कॉफी है दूसरे हाथ में --

और ओ सेल्फ़ी ले रहा है। उसका ध्यान कैमरे की तरफ है। पीछे बहुत ही अच्छा दृश्य है जहाँ पे काफी सारे पेड़ पौधे हैं |

उसके सामने भी दो बाइक्स है जिनमें एक बाइक मे हेमलेट भी लगा हुआ है बाइक का कलर है ब्लैक कलर और उसके आगे एक बिल्डिंग है।

बिल्डिंग बहोत ही खूबसूरत है ब्लू एंड रेड कलर से उसपे डिजाइनिंग की गई है शीशा भी लगाया गया है सामने गेट --

सामने एक हॉल है जहाँ पे कुछ लड़के और लड़कियाँ बैठ के कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

सामने एक औरत मास्क लगा के साड़ी में रेड कलर का झोली ले के आ रही है।